टेबल का कलर है ब्लैक और रेड ।

यहां पर एक बड़ा सा दुकान में अंदर में अंटी है।

है और एक लाइट जल--

दुकान का नी आस पास में आदमी दिखाई दे रहे--

गाड़ी का कलर है व्हाइट और ब्लैक ।

सोफा है सोफा का कलर है ब्राउन ।

और कोई टेबल में बैठा हुआ है।

ये है मंदिर और बहुत सारा आदमी से पूजा करनी आया है।

तीन ठो दिखाई दे रहा है।

आसपास में पेप्सी बोतल दिखाई दे रहे है और पानी बोतल --

कपड़ा का कलर है ब्लू और साइड वाला का येलो और ग्रीन पिक ।

है और एक कार का नी पीछे में एक आदमी है।

एक अलग अलग बहोत ज्यादा मंदिर है और यहाँ से एक आंटी निकल रही येलो साड़ी पेन के।--

भी एक जगह मे चल रहा है।

और मशीन रेड कलर का और अंदर से अंदर में एक वर जा रहे है।

ए एक क्रेश है और तीन ठो बाइक दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का--

दुकान का कलर है यलो और रेड और ऊपर में टीना लगाया हुआ है।

वाल का बाहर में बहुत ज्यादा कच्ची भी है।

यहां पर एक गाड़ी है व्हाइट कलर का।